यहाँ पर बहोत सारे चीज यहां पर देखे नो को मिल रहा है मुझे। जैसे यहाँ पर मुझे प्याज दिख रहे है लौकी दिख रहे और गाजर बैगन मूली टमाटर --

बहोत सारे मुझे सब्जी भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे एक आदमी भी फ़ोन चलाता दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर टमाटर भी मुझे उस कोने पर दिख --

कुछ आदमी भी दिखाई --

और बिल्डिंग भी बहोत सारे मुझे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर बहोत सारी पेड़ भी मुझे देखने को मिल रही है।

जोकि वाइट कलर की है।

लाइटिंग से सजी हुई है।